जिसमें मंगलम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है उसके ठीक बगल में शटर नजर आ रहा--

जिसने कलावा बांधा हुआ है एक पेड़ नजर आ रहा है साइड में आसमान नजर आ रहा है।

जोकि कागज़ से बना हुआ है।

कुछ पाउचेज टंगे हुए हैं एक शटर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक होडिंग लगा है चिल्ड्रेन बुक्स का--

सामने की तरफ में पेड़ लगा हुआ है उसी के बगल से एक छतरी--

जिसपे पानी की टंकी रखी है पीले और नीले रंग की।